कितना अच्छा इधर फूल पत्ती लागल हेय इधर कितना अच्छा रोड कितना अच्छा से निकाला हेय।

गेट कितना सुन्दर लग रहा।

दुकान का उद्घाटन हुआ है मोटर साइकिल है बगल में रूम है।

कुर्सी लगल है खाने का लाइट है सेटनाइजर है।

डॉक्टर ने बैठले ता चेक करने वाला।

अपार्टमेंट का गेट है।

लोगो को बांधता होगा